यह एक झोपड़ी बनी हुई है।

यह एक फोटो है जहाँ पे बहोत सारे लोग आते जाते रहे हैं।

यह एक मस्जिद की फोटो है जो ग्रीन कलर और वाइट कलर की बनी हुई है जहाँ पे स्पीकर भी लगा हुआ है।

आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और एक घर है नीचे जहां पे बहोत सारे कपड़े सूखे हुए हैं।

बनाई गई है यहां पे दो तीन झोंपड़े जैसे भी बनाए गए हैं यहां पक्के झोंपड़े और आगे कुछ कस्टमर भी बैठे हुए हैं।

के मशीने दिखाई गई है कुछ और रखे हुए हैं और इधर की साइड में --